यहां पर बोर्ड पर रितु सिंगार स्टोर लिखा हुआ है।

कुछ सामान भी पत्थरों के ऊपर में रखा हुआ है।

यहाँ पर लकड़ी का अलमारी भी लगाया गया है।

यह एक बैंक के बाहर का दृश्य है।

ऊपर रस्सी में ढेर सारा झालर लटकाया गया है।

किला के दीवारों में दरार पड़े हुए हैं।

यहां पर थोड़ा सा टाइल्स टूटा हुआ भी है।

ये कहीं पर शीशा भी लगाया हुआ है।